वाओ ब्यूटीफुल पहाड़ बाकि रहना --

कलर में है बहुत सही बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ लड़का टच किये हुए है बहुत अच्छा लग रहा है।

बहुत प्यारी पिक्चर आई है।

उसमें लाइट नहीं जल रही है और काफी चारों तरफ अंदर छाया हुए हैं। .

इसमें पब्लिक आराम से घूम सकते हैं और--